एक वॉटर बॉटल भी है।

इस तस्वीर में एक बोर्ड में नाम लिखा हुआ है मस्जिद यहां कई सारी गाड़ियां रखी हुई हैं।